इसपे एक लड़का खड़ा है जिसने अपने हाथ फैलाए हुए हैं और फोटो खींचा रहा। अच्छा नीचे काई भी जमी हुइ है।

यह एक दुकान है जिस पर मछलियाँ बेचीं जाती है और यहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ रखी हुई हैं।

यहाँ पर कुछ लड़के फ्लोर पर लेटे हुए हैं और कुछ लड़को ने वाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई है जो लेटे हुए लड़के आर्मी के --

उसके सामने एक पीले से कैरेट के अंदर बहुत सारी मछलियाँ है | एक लाल तिरपाल पर बहुत सारी मछलियाँ रखी हुईं है |